यह फोटो दिन के समय का दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बाहर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

जिनमें बोटलों पर हिमालया लिखा हुआ दिखाई दे रहा--

जिस इस पर पीले रंग से रंगाई कर रखी है यहां बाहर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां ऊपर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर --

इस फोटो में एक ज्वैलरी शॉप दिखाई दे रही है।

यहां फोटो एक दुकान का दिखाई दे रहा है।